और अंदर की तरफ एक एक शीशे का दरवाजा लगा हुआ है जिस पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं।

जिसके आस पास हम हरे भरे पेड़ पौधे देख सकते हैं।

लाल सफेद रंग की गाड़ियां हम यहां देख सकते है कुछ पेड़ पौधे यहां दिख रहे हैं लोग भी आसपास खड़े हुए हैं।

देख सकते हैं कि यहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र शिमला लिखा हुआ है।

दुकान में लाइटे लगी हुई दिख रही हैं।

एक नाव यहां खड़े हुई है।